यहां पे एस_बी_आई बैंक क बोर्ड बड़ा सा लगा हुआ है सामने यहां पे गेट है।

और ये दूसरी साइड भी यहां कुछ बना हुआ है ये मार्केट जैसा लग रहा है।

यह मंडप बना हुआ है जो शादियों का मंडप बनाया जाता है वह मंडप बना हुआ है ये --

मुंह में लगी हुई है मक्खा को मुंह में से लगा के एक आदमी हाथ में पकड़ा हुआ है।

सामने एक चश्मा रखा हुआ है टावेल रखी हुई है।

और यह घर का जो सीलिंग है वह सीलिंग दिख रहा है गेट गेट है घर का गेट है घर का डिजाइन गोलाकार का बना हुआ है।

पुरुष खड़े हुए हैं यहां ऊपर--

यहां पे दो लोग बैठे हुए हैं तीन हैं लोग कुछ खा रहे हैं।

यहां पे काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए है जिसमें से एक पेड़ है जिसमें आम फरा हुआ है।

सामने यहां घर कोई घर बना हुआ है।

और मछलियों को काट के बेच रहे हैं यहां पे कही मांस वगैरा मछलियों का पड़ा हुआ है।

जो कि यहां पे काफी लोग लेने के लिए भी आय है खड़े हुए हैं।

यहां पे दो न्यू कार खड़ी हुई हैं।

रखा गया है यह पेंट करके गोल्ड पेंट करके इसमें रखा गया है।

यहां पे एक लैपटॉप पर कंप्यूटर रखा हुआ है उम् और सामने--

यह एक पर्वत है पहाड़ जिसे बोलते हैं पत्थर पत्थर ही पत्थर हैं यहां पे।

और यहां पे कुछ महिला पुरुष खड़े हुए हैं बाकी गमले रखे हुए हैं गमले में प्लांटो के पौधे हैं।